मुझे यहां एक बहोत ब बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर--

अह उस सीसी के पास में कुछ नल भी लगे होगे है पानी का और नीचे एक बॉक्स भी रखा हुआ है।